पास में नीचे टाइल्स लगे हुए हैं जो भूरे रंग के है।

नए मकान के ऊपर दरवाजे लगे हुए है जो कांच के बने हुए--

दीवाल पे एक पोस्टर सा लगा हुआ है जो काले रंग का है।

एक पीला बोर्ड लगा हुआ जिस पर नालीदार चादरे सरिया सीमेंट पाइप आदि लिखा हुआ है। एक हरा--

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहोत सारे सोफे पड़े हुए हैं।